अर मैं न लगणु इ हरी कलर की न खाद चिड़कणु पौधों पर अ पौधा भी न हरयां रंग कन आर वैका पिछाड़ी न हल्कु भुरु भुरु कलर होयुं।

इ तस्वीर पर ना बोट पास छन दिखेणा वो भी बारा तेरा ये ना टिहरी झील परा लोकेटेड ।

अर वेका पिछाड़ी ना डोबरा छा हा डिपोला अर वेका पिछाड़ी ना परताप नगर कू भौत ही बडू पहाड़ अर वेका पिछाड़ी ना आसमाना।

वैका पिछाड़ी सफ़ेद गाड़ीन अर रोड अर रोड पर एक ना यूटिलिटी चलनी और भोत सारा आदमी चलना अर एक आदमी को हेलमेट पैन्युं।

ये जो तस्वीर छा सबसे अगवाड़ी मै सीडिन दिखेणी जू की मंदिर का ध्वोरा ले जाणी हमते अर वेका बगलम एक डालू कर मै दिख्येणु।

यूटिलिटी अर वै पिछाड़ी एक बाइक वालू भी आणु अर वै का पिछाड़ी बस स्टैंड बस घरह अर वै का पिछाड़ी आसमान भी अर एक बिल्डिंग भी।

जैका बग्लम डालू वै का पिछाड़ी तीन चार कुड़ान दिखेणा सब एक जनान सब की पठाली भी एक जनिन सब कु रंग भी एक जनान और ह-ह ऑरेंज रंग --

और एक बस भी खड़ी होईं अ सड़क पर न दुई गाड़ीन चलनी एक टैक्सी और एक मारुती एट हंड्रेड ।